पेड़ के निचे है बहुत बड़ा फील्ड है।

आस-पास से बहोत सारे पौधा भी दिखाई दे रहा है।

व्हाइट कलर का घर सब --

खड़े हैं और इसमें यह लग रहा है ये गुलाब का --

लगा हुआ है बहुत दूर में एक फूल दिखाई दे रहा है हरी-हरी घास --

ये एक स्मार्ट क्लास है यहां पर पढ़ाई होता है डेस्क भी बेंच भी --

और यहाँ पे बुक भी मिलता है। कॉपी मिलता है और --